सफ़ेद बदल दिखाई दे रहे है व आगे पेड़-पौधे दिखाई दे --

हरे कलर का बोर्ड रखा हुआ है उसपे सफ़ेद अक्षरों से कुछ लिखा हुआ है। .

व पिल्लो पे भी सफ़ेद चादर ढकी हुई है।

जो सफ़ेद कलर की है उसके नीचे एक लाल कलर की कुर्सी पड़ी है। .

हरा कलर किया हुआ है व एक महिला पर्स टँगा हुआ वो जा रही --

एक क्रीम कलर की लकड़ी पड़ी है जिसपे एक स्टील का हैंडल भी लगा हुआ है। .